चारों तरफ कुर्सियों और सोफों पर यहां लोग बैठकर और आपस में बातचीत कर रहे हैं।

एक पेपर में निकालते हुए हमें दिख रहे हैं और एक व्यक्ति हैं अंदर जोकि सायद मिठाई खा रहे हैं।

चारों तरफ ही दूर दूर तक हमें कुछ लोग एक दो नजर आ रहे हैं और घास छोटे छोटे हैं।

दिख रहे हैं कि बैडमिंटन खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ कुछ लोग।

बड़े से कॉलेज का बहुत ही बड़ा सा ग्राउंड है जिसमें ये जो घासें हैं सूखी हुई--

काफी ज्यादा दूर तक की सभी उर के फील्ड में फैली हुई है।